और इसके जो गेट हैं वे कांच के हैं।

पीछे की तरफ एक पैर की मशीन है।

कुछ बाकीट रखी है बहुत सारे कागज के डब्बे हैं।

पर बहुत सारे कपड़े टंगे हैं।

जिसपे फैशन प्वाइंट लिखा हुआ है।

जिसमें बहुत सारी लाइटें लगी हैं एक बेड रखा हुआ है जिस--

इस पे सफेद रंग की चादर बिछी है तकिये रखें हैं।

पीछे की तरफ की दीवार अलग रंग की है।

दो कुर्सियां रखी है उसके सामने एक मेज है।

यह एक बड़ा सा किचन है।

यहां पर सामने की तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो सफेद रंग की है।

ऊपर रेलिंग है जो की लोहे की है --

यहां पर सामने की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो की हरे भरे हैं।

यह काले रंग की इनमें डिजिटल द्-दिखाया गया है।